इस तस्वीर में लगता है कि एक बकरी का ऑपरेशन हो रहा है।

और दो लोग इसकी अच्‍छे से खाद उतारके कुछ न कुछ चेक कर रहे हैं यें --

ऐंक लड़के ने स्‍टेतु स्‍कोप डाला हुआ है और दूसरे ने मास्‍क और ग्‍लासेस डाले हुये हैं ।

खरबूजे भी वगैरा हैं और कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं।

ऊं बहुत ख प्‍यारा खूबसूरत है जैसे सरकारी अमारतों का कलर होता है ।

टाइप कुछ लिखा भी हुआ है एक बोर्ड के ऊपर और इसमें छोटे से दरख़्त के पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

और यहां पे धूर नहीं दूर कहीं एक इंसान भी खड़ा हुआ है और ये--

शाम को खुलती है और रात के दस बजे तक खुली रहती है ये इस --

इस क्लास में आर्ट्स सीख रही हैं और इनकी उस्तानी साहिबा--

पर ईटें भी पड़ी हुई हैं और एक पाइ--